सड़क पर बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हैं एक बिजली का खंबा है।

चित्र में हमें एक सड़क नजर आ रही है सड़क पर एक बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है एक सफेद रंग की कार खड़ी है।

एक आदमी खड़ा है साइड में एक घर है घर सफेद रंग का है साइड एक घर है उसमें नीले रंग की लाइटे लगी हैं पौधे लगे हैं बाहर एक बोर्ड लगा है।

चित्र में हमे एक मंदिर नजर आ रहा है मंदिर की दीवारें ऑरेंज और लाल रंग की है मंदिर के अंदर दो आदमी बैठे हैं एक आदमी सफेद रंग की हैट पहना है।

जो चल रहा है आदमी सफेद रंग की शर्ट पहना है ।

सड़क पर एक ए_टी_एम है ए_टी_एम के बाहर आंध्रा बैंक ए_टी_एम लिखा हुआ है।

इस चित्र में हमें एक रोड नजर आ रहा है रोड पर एक काले रंग का गेट है बहुत बड़ा गेट के अंदर एक सफेद रंग की इमारत है अंदर कुछ लोग खड़े हैं।

बहुत सारी काले रंग की गाड़ियां खड़ी है एक हरे रंग का कचरे का डब्बा है बिल्डिंग के बाहर एक दुकान में जेमा फैशन पॉइंट लिखा है।

गराज के साइड में एक स्कूटर खड़ा है स्कूटर काले और पीले रंग का है।

की बोतल रखी है पीछे ऑरेंज रंग का पर्दा है।

चित्र में हमें एक पार्क नजर आ रहा है पार्क में कुछ सूखी हरे रंग की घास है।

साइड मे एक सफेद रंग का बोर्ड है आसपास एक पार्क --

बोर्ड है बाहर एक स्कूटर खड़ी है स्कूटर लाल और सफेद रंग की है साइड पे दो दुकान है दुकानों की सीढ़ियां है शटर है सफेद रंग के --

आदमी खड़ा है जो काले रंग का सूट पहना है नीचे हरे रंग का कारपेट --

इस चित्र में हमें एक बहुत बड़ा ऑफिस नजर आ रहा है ऑफिस में बहुत सारी कंप्यूटर्स टेबल हैं।

छतरी नजर आ रही है और कुछ सफेद रंग की बिल्डिंग नजर आ रही--

की ऊपर एक का नीले रंग किताब राखी और साइड में बहुत सारी किताबें लगी है दुकान में एक आदमी खड़ा--

आदमी सफेद रंग की शर्ट पेहना है दुकान के सामने एक स्टूल है।

चित्र में हमें एक बहुत बड़ा ग्राउंड नजर आ रहा है ग्राउंड में हरे रंग की घास--

टूटा हुआ है स्कूल का दरवाजा कथई रग का है बाहर एक आदमी खड़ा है आदमी काले रंग की जैकेट पहना है।

और उस दरवाजे के अंदर लाल रंग की कुर्सीया लगी हैं बाहर एक काले रंग का बोर्ड है उस पे असम किचेन पैक मे एक रेस्टोरेंट लिखा है।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

एक कत्थई रंग की टेबल है टेबल के ऊपर एक ग्लोब रखा है काले रंग की कुर्सी --